और डेकोरेशन का समान भी यहां से मिलते हैं यहां पर लोगों के घरों से जाने के लिए लोग यहां से बुकिंग लेते है।

ये एक गेम है जो चेयर से खेला जाता है।

बारिश हो रखी है बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यह एक स्कूल है एम_पी_एस नाम से ये स्कूल बहुत बड़ा है।

यहां पर सभी प्रकार के भोजन मिलते हैं यहां पर चार्ट लगा हुआ है इस हिसाब से लोग मेन्यू देखकर --

और बाहर यहां पर डेकोरेट किया हुआ है ये बहुत अच्छा है सभी प्रकार के भोजन भी रखे हैं।

और ये बहोत बड़ा है यहां पर बैठने की व्यवस्था भी है।